सामने जो ऑफिसे बनी हुई है जो ऑफिसे के सामने एक बातासा उः उः बना उह स्वीमिंग पूल बना--

उनकी मंदिर बनी हुई है सामने गेट बना हुआ है और गेट के गेट में सीढ़ियां बनी हुई गेट के अंदर भी सीढ़ियां बनी है जो दो लड़के सामने खड़े हुए है और सेल्फी ले रहे है।

ए-एक बगल से कुछ यह जो ठेले लगी हुई है अ खड़ी हुई है ठेले के पास अगल-बगल पेड़ पौधे हैं हरे भरे हैं बादल नीले हैं।

और ईस बा एक नदी है जिसने नदी में पानी तालाब बना हुआ है पानी भरा हुआ है सामने पाहाड़ दिख रही है बादल नीले हे--

झूमरे लगे हुए कुछ अगल बगल गुलदस्ते लगे हुए रखी हुई है। और कुर्सियां जो रखी है जिसमें बैठे हुए है।

एक बड़ा सा गार्डन बना हुआ हैं जिस गार्डन ओ में हरे घास जमे हुए हैं और की सामने बड़ा सा पहाड़ बना हुआ हैं।

एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है जिस हॉल में अगल बगल दीवाले है खिडकियाँ लगी हुई हैऔर एक भी बनी हुई हे।

जो हरे भरे दिख रहे है बादल सब हल्के नीले हे।

सामने जो महल बनी हुई है जो काफी पुरानी हो चुकी है उसमें घास भी जमा हुआ है और मैदाने हैं रास्ता बना हुआ है मैदानो में हरे घास है।

पेड़ पौधे भी है जो हरे भरे हैं। और हरे घाँस भी जमी हुई है फूल लगे हुए हैं। बादल नीले--